फिर एक अंकल बैठे हुए है जिनके हाथ में कुछ औज़ार दिखाई दे रहे है जिन को वो साफ़ करते हुए दिख रहे है यहाँ पर काफी सारे मशीन के टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारे समान पड़े हुए है।

दुकान के बाहर एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर अनार रखे हुए दिखाई दे रहे है कुछ केले रखे हुए है बहुत सारी ब्लैक बैरी रखी हुई दिखाई दे रही है।